इतना अच्छा-अच्छा तोता रखा हुआ है यहाँ पे।

मौसम साफ है आगे बहुत बड़ा पहाड़ है।

मोर है यहाँ पे कितना अच्छा है मोर।

यहाँ हरा भरा गाछ है बादल एकदम साफ है।

फूल का बागान है यहां पे।

अच्छा-अच्छा फुल है पेड़ है अच्छा-अच्छा।

लाइट लगाया है दोथो हरा भरा घास है यहाँ पे सब चीज है।

ये बिल्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है।